कुछ लोग खड़े हुए हैं।

स्त्री करता व्यक्ति दिख रहा है प्रेस दिख रही है।

इस चित्र में एक पार्क --

मैकेनिक शॉप दिख रही है कारखाना--

सामने चर्च चिन्ह लगा हुआ है।

ये फूलों का मार्केट दिख रहा है सामने की तरफ बच्चा जाता दिख रहा है।

एक बड़ा खेत दिख रहा है।

पेड़ दिख रहे हैं पीछे बड़ा--

इस चित्र में एक व्यक्ति दिख रहा है।

पेड़ दिख रहा है कुछ लोग जाते दिख रहे--

गाड़ियाँ दिख रही हैं हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं पीछे पहाड़ दिख रहा--

कुछ लोग पीछे दिखाई दे रहे--

पिक्चर चित्र बने दिख रहे हैं दीवार पर पुराने बुतों के सामने--

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है बोहोत सारी मशीनें रखी--

एक मॉल दिख रहा है।

सामने गाय बछड़े घास खा रहे है।

बिल्ली दो बिल्ली की दिख रही हैं।

बोहोत सारे पौधे दिख रहे हैं।

चित्र में एक बहुत सुंदर मस्जिद--